वहीं सामने एक औरत खड़ी हुई दिखाई दे रही है जिसने सफेद रंग के कपड़े पहन रखे हैं।

इस फोटो में कुछ बिजली के वायर दिखाये गये है।

इस फोटो में बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं वह बहुत सी--

और यहां पर कुछ पोस्टर भी लगी हुई दिखाई दे रहे हैं।

इसमें दिखाया गया है कि कुछ भुट्टे जमीन पर पड़े हुए हैं।

और पास में कुछ सूखी घास पड़ी हुई दिखाई दे रही है।

इसके पीछे कुछ पेड़ लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

इस भवन के पास में कुछ खड़े हुए लोग दिखाई दे रहे हैं।

व नीचे एक कालीन बिछी हुई दिखाई दे रही है।

इसमें आकाश दिखाई दे रहा है जो कि कुछ बादलों से घिरा हुआ है।

इस दृश्य में कुछ लोग दिखाई दे रहे है व एक पीले रंग का टेंपो दिखाई दे रहा है।